ट्रैक्टर के पीछे में भी बहुत सारा आदमी दिखाई दे रहा है।

रूम दिखाई दे रहा है।

दीवार दिखाई दे रही जिसको वाइट कलर से पेंट किया हुआ है।

वो दोनों क साइड में बिल्डिंग्स दिखाई दे रहे है।

और वो पत्थर ब्लैक कलर में दिखाई दे रहे हैं।

पिक्चर में घास दिखाई दे रहा है।

पहाड़ दिखाई दे रहे है।

और साइड में भी येलो कलर का एक ठो जे_सी_बी दिखाई दे रहा है।

मेंशन दिखाई दे रहा है।

दो मुर्गा दिखाई दे रहा है।

और एक ठो मुर्गा का साइड में सिल्वर कलर का दो दृश्य दिखाई दे रहे है।

एक तो ब्रिज जिस कुछ दिखाई दे रहा है।

वो पानी का अंदर में बहुत सारा लोग नहा के भी दिखाई दे रहे हैं।

बरामदा दिखाई दे रहा है।

ट्रेन दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें रेड कलर से कुछ लिखा हुआ है।

यहां पे एक ऑफिसर है जो एक लड़का को कुछ देते हुए दिखाई दे रहा है।

और स्कूल मे ब्लू कलर मे बहुत सारा विंडोस दिखाई दे रहा है।

उसका गेट भी रेड कलर से पेंट करके है।

और ऊपर में ब्रिज जैसा कुछ दिखाई दे रहा है।

इसमें बहुत सारे समान टांगे दिखाई दे रहे हैं।

गेट के बाहर में एक वाइट कलर के कपड़ा में एक आदमी खड़ा है।

एक गैराज दिखाई दे रहा है।

रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

ब्राउन कलर का घास दिखाई दे रहा है।

पीछे में घास दिखाई दे रहा है।

और पीछे में एक ठो झरना दिखाई दे रहा है।

और वो स्टेज के ऊपर में एक ठो आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

और पीछे में पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

उनका के मछली दिखाई दे रहे हैं येलो कलर का दो बॉक्स में--

और वो शॉप का अंदर मे--

दूसरा रूम दिखाई दे रहा है।